में से तीन लड़कियों ने ब्लू कलर की शर्ट और नीचे लोअर पहनी हुई यहां पर एक लड़की जिसने चेकदार रेड कलर नीचे ग्रे कलर की वो स्कर्ट पहनी हुई हैऔर इसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है।

एक औरत ने पिंक कलर की और दूसरी औरत ने येल्लो कलर की साड़ी पेहनी हुई ऊपर से शाल लिया--

नाव पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने व्हाइट और रेड कलर की चेकदार शर्ट पहनी है उसने ब्लू कलर की जीन्स पहनी है और उसने अपने सर पर रेड कलर की टोपी लगाई है और किनारे-किनारे लकड़ियां --

एक जगह है जहां पर वाइट कलर की बिल्डिंग और खम्बे लगे हुए है यहाँ पर एक वाइट मूर्ति है उसके आगे एक मेज रखी है जिस पर ब्लैक और मैरून कलर का पेंट हुआ है उस --

इस के बगल मे एक मशीन रखी है जो रेड कलर की है उस के पीछे कुछ दीवाल है वो वाट कलर की है और वहां पर एक कार के गेट रखे हुए हैं।

ते रेड ओर ब्लैक कलर का पेंट हुआ है उस के पास दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं एक गाड़ी का कलर ब्लैक और दूसरी गाड़ी का कलर वाइट है।

एक मैदान है मैदान की जो पास छत है छत पर वाइट कलर का पेंट हुआ है उस के नीचे एक ट्र ट्रक खड़ी हुई है जिस पे येलो और ब्लू कलर का पेंट हुआ है उस के बगल में कुछ लोग बाइक पर खड़े हुए हैं।

कि जो दीवाल है वो रेड कलर की है दुकान मर बहोत सारे माले लगे हुए हैं और मोमबत्तियाँ जल रही हैं जो माले का कलर है वो ऑरेंज कलर का है और उसके बगल में ऊपर एक बैनर लग --

एक दुकान है दुकान का जो कलर है वो वाइट कलर से पेंट हुआ है उसके ऊपर एक तार जा रहा है।